ये एक गाँव जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक घर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके साइड साइड में बहुत सारे दूर-दूर में एक वाईट वाईट पोल दिख रहा है और यहाँ पे पेड़ भी बहोत सारे है।

यहां पे एक बहोत बड़ा-सा बिल्डिंग है जो बहुत ही खूबसूरत है और इसमे ऑरेंज और वाईट कलर पैंट की हुई है और एक सीढ़ी भी दिखाय दे रहा है और दो पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहा पे एक बहोत बड़ा नदी है जिसमे पानी नीले रंग का दिखाय दे रहा है और उसके किनारे में छोटे छोटे बालू जैसे पत्थर रखे हुए है और बहोत सारा पौधा है और एक पूल जैसा दिखाय दे रहा है।

यहां पे एक पार्क है जहां पे सामने में कुछ रड जैसा बना हुआ है और बहुत सारा पेड़ भी है और यहां पर एक स्टैचू भी खड़ा है जो गोल्डन कलर का है।